ये एक जिसका यहाँ पे प्रवेश द्वार है जो काफी सुन्दर रंग से सजाया गया है और यहाँ पे स्टील का रेलिंग भी दिया गया है और नकली फूल से --

ये एक में एक मेला लगा हुआ है जो सभी जेंट्स लेडीज़ बैठे हुवे हैं। नीम का बढ़ा सा पेड़ है उसके नीचे यहाँ पे कुर्सी भी लगा हुआ है।

चटनी है। स्टील का जग और ग्लास रखा हुआ है। रेड कलर का कुर्सी लगा हुआ है। यहाँ पर भी कोई बैठा हुए नही है। सब खाना खाके उठ गए हैं।